बाहर की तरफ काफी खुला मैदान नज़र आ रहा है जहाँ पर काफी हरी-भरी घास है और सूखी घास भी है।

अंदर काफी पेड़ लगे हुए हैं और एक दो बिजली के खंबे भी नज़र आ रहे हैं।

जो सब सीरीअल वाइस बने हुए हैं एक मकान के ऊपर लाल रंग का झंडा लगा हुआ है यहाँ नीचे की तरफ मैदान में कुछ कपड़े सूखे हुए हैं जाली पर।

सामने की तरफ कुछ छोटे-छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं जिनपर सफेद रंग के फूल खिले हुए हैं ।

एक झील-सा बना हुआ है जिसमें एक किनारे से जाला पानी के अंदर जा रहा है| साइड के तरफ कुछ घांस-फूस बनी हुई है ।

की तरफ एक शटर का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा है जिस पर बैंक लिखा हुआ है एटीम । नीचे शीशा नज़र आ रहा है।